उसके पीछे बहुत सारे जानवरों को खाने का सामान भी दिखाई दे रहा है।

बगल में एक विशाल पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

गैंडो को सफेद रंग से रंगा गया है एवं गेंडे के ऊपर एक लड़का बैठाया गया है।

दुकान के दरवाजे को अल्मुनियम से बनाया गया है।

अल्युमिनियम पर बहुत सारे सफेद रंग के स्टीकर भी चिपकाए गए हैं।

दिखाए गए छवि में एक रेलवे परिषद का दृश्य दिखाया गया है।

हॉल की छत को कर्कटों के मदद से बनाया गया है एवं उसमें बहुत सारे ट्यूबलाइट भी लगाया गया है।

सभी महिलाओं के पास अलग अलग प्रकार के सब्जी रखे गए हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा टेंट दिखाया गया है।

इनके कुछ ही दूर पर बहुत बड़े बड़े इमारत भी दिखाई दे रहे हैं।

टेंट के अंदर बहुत से बिजली के उपकरण भी दिखाई दे रहे है एवंम आस पास बहुत सारे ऑटो रिक्शा एवंम लोग भी दिखाई दे रहे है।

कमरे में बहुत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं जो बू नीले एवं स्किन कलर के रंग की हैं।

पेट्रोल पंप में चार पेट्रोल फिलिंग स्टेशन दिखाई दे रहे हैं एवं उसके आसपास एक बड़ा सा पिकअप वैन एवं दो बड़ी बसे भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ ही दूर पर एक लाल रंग का चेयर भी दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम के दरवाजे को अल्मुनियम से बनाया गया है।

चट्टान के पास कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने अलमारी में बहोत सारे ग्लासेस भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाए गये दृश्य में एक बड़ा सा खुला मैदान दिखाया गया है मैदान में बहोत सारे टेंटे लगाई गई है।

बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर यदुवंशी किशन सेवा केंद्र डंडई गढ़वा झारखंड लिखा गया है।

दिखाए गए छवि में एक बड़ा सा कमरा दिखाया गया है।

बोरियों के पास एक बड़ा सा छड़ भी दिखाई दे रहा है।

कमरे के दरवाजे के भूरे रंग से रंगा गया है।

दिखाए गए दृश्य में बहुत सारे आलू को दिखाया गया है।

आलू देखने में काफी लग रहे हैं एवं आलू बहुत ज्यादा भी दिखाई दे रहे हैं।

काउंटर के पास एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

एक फिसलन पट्टी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने नीली रंग का शर्ट एवं काले रंग का हाफ पैंट पहना हुआ है।

हॉल की फर्श को टाइल्सो से ढका गया है एवं एक लाल रंग का बड़ा सा कालीन भी बिछाया गया है।

हॉल में बहोत सारी कुर्सियां एवं टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

मॉल की दीवार पर बहुत सारे टैडी बियर भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटे से दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ ही दूर पर दो बड़ी बड़ी इमारतों दिखाई दे रही हैं इमारतों को झालर से सजाया गया है।

दुकान के अंदर एक छोटा सा काउंटर है जो कि काले रंग का है।

पार्क का मैदान बहुत ही हरा भरा है एवं उसकी इर्द गिर्द बहुत से पौधे भी लगाए गए हैं।

पार्क में एक बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा रेलगाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

गुलाबी पर्दो से सजाया गया हैं स्टेज के आस पास बहुत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

कमरे की दीवार को सफेद रंग से रंगा गया है एवं कमरे में बहुत सारे स्टीकर चिपकाए गए हैं।

छत पर एक वेंटीलेटर जो आधा खुला पड़ा है।

छत की दीवाल को गुलाबी रंग से रंगा गया है एवं दीवार पर बहुत सारे बिजली के समान के उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं।

आस पास बहुत सारी इमारतें भी दिखाई दे रही हैं एवं एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

कमरे का दरवाजा को अल्मुनियम से बनाया गया है।

सभी कपड़े देखने में काफी अच्छे और नए दिखाई दे रहे हैं।